दिखाई पड़ रहा है। ऊपर बिल्डिंग भी बना हुआ है।

हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है

और सस्ता भी गाड़ी --

प्रसाद जागरण का अभिनंदन किया जा रहा है।

बोहुत सारे मकान के --